यह एक हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें द्वार पर बहोत सारे लोग जा रहे हैं और बाहर हनुमान जी की बहोत ही सुंदर मूर्ति भी लगी हुई है।

यहाँ एक नदी है नदी में बहोत सारा पानी है नदी के किनारे बहोत सारी भेड़ें खड़ी हैं और कुछ भेड़ें नदी में से पानी पी रहे हैं।

यह एक मजिद है जो की गुलाबी और हरे रंग से पुत्ती हुई है माजिद के दो मीनारे दिखाई दे रही है।

ओर ऊपर की ओर बालकनी भी बनी हुयी है आसपास पेड़ भी लगे हुए है ओर एक बडा सा बोर्ड भी इसपर लगा हुआ है।

यह एक पहाड है पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बड़े पेड भी दिखाई दे रहे हैं ।